नमस्कार filing a workpiece फाइलिंग अ वर्कपीस के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
फाइलिंग क्या है
फाइलिंग में उपयोग के लिए अनेक टूल्स
फाइलिंग के भिन्न प्रकार
एक वर्कपीस को कैसे फ़ाइल करें
और फाइलिंग करते समय सामान्य गलतियाँ
इस ट्यूटोरियल के लिए हमें निम्न की आवश्यकता है
एक फाइलफ़ाइल किये जाने के लिए वर्कपीस
वर्कपीस को पकड़ने के लिए बेंच वाइस
नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स
वर्कपीस की स्क्वायरनेस को जांचने के लिए ट्राइ स्क्वायर
वर्कपीस को काटने के लिए हैक्सॉ
वर्कपीस पर निशान लगाने के लिए पन्च
और एक बॉल पाइन हैमर
पहले देखते हैं फाइलिंग क्या है
फाइलिंग फ़ाइल प्रयोग करके एक जॉब या वर्कपीस से अतिरिक्त मटीरीअल निकालने का एक मेथड है
भिन्नभिन्न आवश्यकताओं के लिए भिन्नभिन्न फाइल्स होती हैं
रेक्टैग्यूलर क्रॉससेक्शन यानी आयताकार अनुप्रस्थ काट के लिए फ्लैट फ़ाइल
चिकनी सतह प्राप्त करने के लिए स्मूथ फ़ाइल
वर्कपीस के समकोण वाले भाग को फ़ाइल करने के लिए सेफ एज फ़ाइल
चौकोर कोनों और चौकोर छेदों को बनाने के लिए स्क्वायर फाइल
अर्द्ध गोलाकार सतहों को फाइल करने के लिए हाफ रन फ़ाइल
और छेदों और गोलाकार खाँचों के लिए : राउंड फाइल
अब फाइलिंग की प्रक्रिया सीखते हैं
मेरी आवश्यकता 5 बाइ 3 इंच का वर्कपीस है
जॉब या वर्कपीस जो मेरे पास है वह 5 बाइ 4 इंच का है
अतः सबसे पहले 1 इंच का अतिरिक्त भाग काटते हैं
इसके लिए वर्कपीस पर मार्किंग मीडियम प्रयोग करें
आप चॉक या इंक को मार्किंग मीडियम की तरह प्रयोग कर सकते हैं
एक बार जब मीडियम प्रयोग हो जाता है तो दर्शाये गए की तरह जेनी कैलिपर प्रयोग करके वर्कपीस पर निशान लगाएं
अतः मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 इंच से कुछ कम पर निशान लगा रही हूँ
आगे मार्क की हुई लाइन पर छेद करने के लिए पन्च और बॉल पाइन हैमर प्रयोग करें
इसके बाद वर्कपीस को वाइस के जॉज़ यानी जबड़े के पैरेलल रखें
अब वाइस के जबड़ों यानि जॉज़ को कस लें ताकि वर्कपीस न हिले
इस प्रकार हम वर्कपीस को आसानी से काट सकते हैं
आगे एक हैक्सॉ लें और वर्कपीस के अतिरिक्त भाग को काटें
एक बार जब अतिरिक्त भाग कट जाये तो वर्कपीस को दोबारा नापें
हाँ अब नाप बिल्कुल ठीक है मेरे पास यह 5 बाइ 3 इंच का है
अब फाइलिंगशुरू करते हैं
सबसे पहले हमें एक उचित फाइल चुननी है
मुझे चिकना किनारा चाहिए इसलिए मैं स्मूथ फाइल चुनूँगी
निश्चित कर लें कि फाइल का हथ्था यानी हैंडल सुरक्षित रूप से फिट हो
एक उचित हथ्थे के बिना फाइल प्रयोग न करें
नहीं तो हाथ घायल हो जायेंगे
निश्चित कर लें कि फाइलिंग शुरू करने से पहले फाइल साफ़ हो
जंग लगी हुई फाइल्स प्रयोग करना वर्कपीस को तोड़ देगा साथ ही आपके हाथों में भी चोट लगेगी
अतः मैंने उचित फ़ाइल चुन ली है
अगली स्टेप एक बार फिर वर्कपीस को बेंच वाइस में सुरक्षित रूप से रखना है
अपने आप को बेंच वाइस से 90 डिग्री समकोण पर स्थित करें
अपनी बायीं टाँग आगे और दायीं टाँग पीछे रखें
फाइलिंग के लिए यह सबसे अच्छी स्थिति है
अब फ़ाइल का हथ्था यानी हैंडल अपने दायें हाथ में मज़बूती से पकड़ें
अपने बाएं हाथ से दिखाए गए की तरह फ़ाइल की नोक पकड़ें
निश्चित करें कि दायें हाथ का अंगूठा मज़बूती से फाइल को दबा रहा है
अब हम फाइलिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं
फाइलिंग के तीन मेथड्स होते हैं ये हैं :
स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइलिंग
ड्रा फाइलिंग
डाइऐगनल या क्रॉस फाइलिंग
इनको एकएक करके देखते हैं
फाइल को लम्बाई में वर्कपीस की सतह पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलाने को स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइलिंग कहते हैं
इस मेथड में फाइलिंग फ़ाइल को धीरे से ऊपर और नीचे घुमाकर की जाती है
आप देख सकते हैं कि आपका वर्कपीस फ़ाइल हो गया है और अतिरिक्त मटीरियल हटाया गया है
ड्रा फाइलिंग मेथड में फाइल को समान प्रेशर यानी दबाव से शरीर की तरफ खींचा जाता है
डाइऐगनल फाइलिंग मेथड में फाइल को वर्कपीस की सतह पर विकर्ण की दिशा में चलाया जाता है
फाइल की गतिविधि वर्कपीस के एक कोने से दूसरे कोने तक विकर्ण की दिशा में होती है
एक बार जब फाइलिंग पूरी हो जाती है तो हमें वर्कपीस सतह की फ्लैट्नेस और स्क्वायरनेस जाँचनी होती है
यह ट्राइस्क्वायर और वर्नियर कैलीपर की मदद से किया जाता है
फ्लैट्नेस ठीक है या नहीं यह जांचने के लिए दिखाए गए की तरह ट्राइस्क्वायर को वर्कपीस पर रखें
ऐसा वर्कपीस पर तीन अलगअलग जगह पर रखकर करें
यह प्रकाश स्रोत के सामने जाँचें
यह फ्लैट्नेस का स्पष्ट संकेत है
अगर सतह असमान है तो आप वर्कपीस और ट्राइस्क्वायर के बीच प्रकाश की किरणें देखेंगे
इन स्थितियों में आपको फिर से फाइल करना पड़ेगा
आगे हम ट्राइस्क्वायर प्रयोग करके वर्कपीस की स्क्वायरनेस को जांचेंगे
दर्शाये की तरह ट्राइस्क्वायर को वर्कपीस के एक कोने पर रखें
अब ट्राइस्क्वायर के सिरों को वर्कपीस की दो संलग्न साइड्स से इस प्रकार स्पर्श करें
जाँचें कि वर्कपीस की संलग्न साइड्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं या नहीं
यदि नहीं तो फिर से फाइल करें
अन्य नाप जो हमें लेने की ज़रुरत है वो है वर्कपीस की चौड़ाई जांचना
इसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर प्रयोग करना है
दर्शाये गए की तरह वर्कपीस को वर्नियर कैलिपर के जॉज़ यानि जबड़ों के बीच में रखें
वर्कपीस की चौड़ाई नापें
अब यह वर्कपीस पर तीन अलगअलग स्थितियों पर दोहराएं
एक जैसी नाप दिखाती है कि वर्कपीस की चौड़ाई समान है
अब समय है यह सीखने का कि फाइलिंग के दौरान क्या नहीं करना है
वर्कपीस को किसी एंगल पर फाइल न करें
वर्कपीस को केंद्र को छोड़ते हुए दोनों सिरों पर फाइल न करें
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा
एक वर्कपीस को नापना
वर्कपीस के अतिरिक्त भाग को काटना
वर्कपीस को फाइल करना
दर्शाये लिंक पर उपलब्ध विडिओ स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है इसे डाउनलोड करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएँ चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमको लिखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के एम एच आर डी के nmeict द्वारा समर्थित है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
इस ट्यूटोरियल को खास राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्बन्धी मीडिया संस्थान चेन्नई के लिए ही बनाया गया है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद